यह बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है यहा यह मनमोहक सीन ह ।

यह एक कोयले का खदान है।

यहा पर एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए आई हुई है दुकान में।